सो बेसिकली ये एक मेडिकल स्टोर है अह अगर आप अच्छे से देखे तो यहां पे एक स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है।

अ कर्टन लगे हुए हैं। बैलून से डेकोरेशन की गई है।

यहां पर अ कुछ काम होता है वर्कर्स रहते हैं एक कार खड़ी हुई है।

अलग अलग डिजाइन है जो लकड़ी है लकड़ी से बनाई हुई डिजाइंस है अलग अलग तरह की।

छोटा सा खंभा लगा हुआ है और उस पे छोटी सी चैन दिख रही है।

और एक सामने रूम बना हुए है इसमें नीला शटर है तो--